कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां कंप्यूटर भी रखे हुए हैं।

यहां पर पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें लाल रंग का टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लाइटों से डेकोरेशन हो रही है।

बहोत से लोग बैठे हुए हैं।

इसमें काले रंग के स्टूल भी रखें हुए हैं।

इस चित्र मे हमें मेपलस एकेडमी दिखाई दे रहा है जो एक स्कूल है उसके बराबर में गंगा अमृत हॉस्पिटल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर लड़कियां डांस कर रही हैं यहां पर प्रोग्राम हो रहा है।

इस चित्र में हमें सामने एक क्रीम कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें नीचे बहोत सारी भीड़ बटली हो रही है।

इस क्षेत्र में हमें बारिश का मौसम दिखाई दे रहा है।

एक पंखा भी चल रहा है।

इस चित्र में हमें मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

दीवारों पर टैल भी लगी हुई हैं।

हरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहें --

पहाड़ों में से पानी डल गिर रहा--

इस चित्र में हमें स्कूल के विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी इस यंत्र से कुछ देख रहे हैं की--

आसमान भी दिखाई दे रहा है एक गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है।

सामने चार आदमी भी खड़े हुए हैं और यहां लाल रंग के कपड़े पे बहोत सारी मछलियां हैं।

पेटी में भी रखी हुई है।

बिजली के तार भी दिख रहे है और हरे पेड़ पौधे भी--

यहां एक आसमान भी हो रहा है और हरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

इस चित्र में हमें पहाड़ दिखाई दे रहे है और पानी बह रहा है।

धुंध का मौसम हो रहा है।

पानी बहुत तेज गति से बह रहा है हवा चल रही है।

एक कुर्सी रखी हुई है।

इस चित्र में हमें यह मंदिरे दिखाई दे रही हैं जहां हिंदू नारी पूजा कर रही हैं और नीचे पराली पड़ी हुई है।

और डेकोरेशन भी हो रही है।